एक रास्ता है रास्ते के बगल में एक छोटा-सा बाल काटने का दुकान है जो कि काफी लम्बा है। ऊपर लाइटें लगी हैं एक टी_वी सामने लगा है जो कि बंद हैं काँचों में कुछ पोस्टरें लगी हैं।

एक बड़ा-सा हवाई अड्डा है| हवाई अड्डे में एक एरोप्लेन खड़ी है जो इस के ऊपर लिखा है इंडिगो | ये व्हाइट कलर और नीले कलर की है| बहुत से आदमी खड़े हैं| एक आदमी खड़ा है जो कि पर्स रखा है और वो फोटो खिचा रहा है ।

बिजली के खम्भे है| बगल में एक और मकान है।

नीचे खंधे के खंधे बने हैं कांचे लगी है कांच के पीछे एक लाइट लगा है मेन गेट है बोर्डे लगी है।

रास्ते के बगल मे एक छोटा-सा मकान है।

एक रास्ता है| रास्ते के बगल में एक लंबी-सी सैलून की दुकान है| जो के दोनों तरफ अ-चार-चार कुर्सियाँ रखी है| ये लाल कलर के है| एक टी_वी लगा है जो के चल रहा है| एक फ्रीज है।

कुर्सियां है जो की ब्लैक कलर के है| नीचे कुछ टाइल्स लगी हैं लाइटें लगी है।

एक बड़ा सा मैदान है मैदान मे कुछ कारखाने है जो की कुछ लोहे के कुछ आकार के बने है बगल मे कुछ कचड़े कूड़े रखे है घांसे है जो की हरा-भरा है कुछ सामान रखी है।

ऊपर एक पो एक अ पोस्टर लगा है एक कैमरा लगा है बहुत सी लाइटे लगी है।

बगल में एक कुर्सी है बगल में एक और इलेक्ट्रिकल गाड़ी है दीवाल का रंग सफ़ेद है।

एक रास्ता है रस्ते के बगल में कमरा है छोटा-सा जिसमे बहुत से कांचे लगे हैं कुछ तो कुर्सियां है जो लाल कलर के हैं दीवार में लिखा है जय गुरु सैलून ।